अंदर प्लास्टिक का समान है काँच की दीवार बनी हुई है लाल कलर का सुपर मार्केट का इंटीरियर और आउट आउटडोर है।

यह एक ग्राउंड है गोल चक्कर है गोल चक्कर में एक स्तम्ब है स्तम्ब के ऊपर कोई मूर्ति रखी गई है जो।

वह आदमी दिख रहे हैं सामने जमीन दिख रही है गमले रखे हुए हैं सीडीओ के बाजू में ऊपर झंडा फैला रहे हैं ऊपर --

नीचे थोड़ी जमीन पर घास है थोड़ी जमीं सुखी है कोई जमीन पर लड़कियां सुखी लड़कियां है ऊपर टहनिया पेड़ की लड़की हुई है।

मंदिर दिख रहा है जो पूरा भगवा रंग में रंगा हुआ है और आगे खाली जमीन दिख रही है बाजू में यज्ञ का थोड़ा सा भाग दिख रहा है पीछे खेत दिख रहे हैं।

कुछ दूकान है एक पावर का केबल जा रही है दा खम्बा खड़ा हुआ है पोस्टर लगा हुआ है।

यहाँ पूजा पाठ करते हुए दिख रही है दुकान में दीया लगे हुए हैं दुकान के देहरी में सीढ़ियां दिख रही हैं।

कुछ घास लगी हुई है आसपास बहुत सारे वृक्ष लगे हुए हैं दूर-दूर तक वृक्ष दिख रहे हैं।